यह एक होटल है जोकि बहुत ही साफ सुथरा है नीचे का फर्श व्हाइट कलर की है ऊपर का भी व्हाइट कलर की है।

बल्ब को भी दिखाया गया है कुछ पंखे खोल के रखे हुए हैं जिसका वायरिंग को चेक किया जा रहा है।

झरका झरना के नीचे में एक व्य दो व्यक्ति को दिखाया गया जो सेल्फी और फोटो खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह बहुत ही सुंदर जगह हैजिसमें बहुत सारी लाइटें लगाई गई है रंग बीरंगे के। लाइट लगने के कारण आसपास का क्षेत्र बहुत ही रंगीन दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं एक बैटिंग कर रहा है तो दूसरा फील्डिंग कर रहा है।

बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं। एक पत्थर के ऊपर बैठा है तो एक बैट पर ही बैठ गया है।

फ़ोटो भी लटका हुआ है। उसके बगल में ओम लिखा हुआ है।

बहुत सारे बाइकें खड़ी हैं एक बाइक निकालने की कोशिश कर रहे तो दूसरा एक खड़ा है।

यह एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है जो कि इसमें लाइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है।

आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं उसी के बगल में एक लंबा सा टावर पिलर जैसन खड़ा है।

आस पास के क्षेत्र में हरे भरे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह एक दुकान है जिस में बहुत सारे वस्तुओं को रखा गया है।

आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो उसका पत्ता बहुत ही हरा भरा है।

इस घर का मेन दरवाजा भी बंद है और भी बहुत सारे शटर वाले रूम है।

यह एक पार्क है जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं ।

आजू बाजू के क्षेत्र बहुत सारे पेड़ पौधे हैं बहुत ही बड़े बड़े पेड़ हैं।

यह एक पेट्रोल पंप है जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा में बनाए गया है।

और आसमान बहुत ही साफ-सुथरा दिखाई दे रहा है एक अ ओ लड़की अपने हाथ में बैग ले लिए हुए बैठी हुई है।